यह एक फ्लावर की पटरी मार्केट है यहां पर बहुत सारे तरंग बिरंगे फूलों की मालाएं रखी हुई हैं।

उसी के पास में एक व्यक्ति भी खड़ा हुआ है।

एक सिलेंडर रखा हुआ है अंदर कुछ चेयर्स पड़ी हुई हैं ऊपर के लिए एक फैन भी लगा हुआ है।

हॉल है गेट है जहां पर जे डी इंजीनियरिंग कॉलेज करके लिखा हुआ भी है।

इसमें वाइट कलर के खूबसूरत से फूल है।

एक ऑटो आ रहा है साथ में दो तीन कारें भी आती हुई नजर आ रही हैं।

स्टेशस में जनकपुरी पूर्व लिखा हुआ है।

मैट्स मिल रहे हैं मैट्स है कलरफुल अलग अलग डिजाइन के मैट्स रखे हुए हैं।

यह एक मार्केट में ऑटोमोबाइल्स की दुकान है जिसमें काफी सारी स्कुटियां बिक रही है।

यहां पर स्विमिंग पूल में बहुत सारा पानी है जिसमें--

ये किसी मॉल का फोटो है जहां पर बोहोत सारे अंडरवियर बनियांस वगैरह रखे हुए हैं।

और इस दुकान के पास में कुछ क्रेट्स रखी हुई हैं जो नीलू कलर की हैं।

और साथ में ही कुछ हरे भरे बढ़िया बढ़िया पेड़ भी लगे हैं काफी बड़े बड़े जो--

जहां पर काफी टूरिस्ट घूमने आए हुए है।

यह एक खेत का फोटो है जिसमें काफी भरी हरियाली भरी लगी हुई है।

यह एक किसी नदी का फोटो है जिसमें दूसरी साइड में घास जैसी हरियाली है उसके पीछे पहाड़ और कुछ पेड़ पौधे दिख रहे हैं।

न नदी के अंदर नाव चल रही है जीसमें काफी सारे लोग नाव में बैठकर नाव की यात्रा कर रहे हैं पास में एक पीले रंग की नाव अलग से खड़ी हुई है।

यह किसी एक इलेक्ट्रॉनिक शोरूम का फोटो है।

और नीचे के लिए बहोत सारी सरिया लगी हुई है।

डोन डोरा फैक्ट्री और बर्गर किंग ऐसे बहुत सारे--